बहुत मस्त यहाँ के सर जी बता रहे है बहुत अच्छा--

यहाँ पर अधिक मात्रा में लोगो की उपस्थित हुई है जब मंदिर हुँक ताला ऊपर दिख रहा है बोहोत ही सुंदर लग रहा है नजारा।

बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जा रहा है बोर्ड ब्लैक बोर्ड बताया जा रहा है कि अच्छा चीज है बहुत मस्त है अच्छे से बैठे हैं लोग पढ़ाई कर रहे हैं।

अच्छे से नीचे का हरयाली जो छायी है वो हरियाली प्रतिमा बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है जैसे अथि--